ऑरेंज कलर का है स्कूल है इसके बगल मे पेड़ पौधे है छोटे छोटे और साइड मे दो तीन और बाइक है।

यहाँ पे बहुत सारे अच्छे गार्डन है गार्डन मे बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं सामने से पूरा राउंड मे घुमा करके--

लोहा का घेरा बना हुआ है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे है तीन पौधे नारियल का है वहां पे बहोत अच्छे से पेड़ की कटिंग की गई है पीछे नदी है नदी में पानी है।

यहां एक रोड है जो सामने एक दुकान में उसके बगल में एक कार है और उसके भी बगल में एक और स्कूटी भी है साथ में एक टेंपो है और इधर एक भी कार है।

एक भगवान को एक पिलर के ऊपर टाइल्स लगा हुआ है पिलर के ऊपर खड़ा किया गया है वहाँ अंदर काफी सारे हैँ।

यह एक गार्डन है जिसमें काफी सारे फूल लगे हुए हैं चिड़िया घर भी है जिसमें--

एक्सराक्स भी है यहां पे एक्सराक्स भी किया जाता है यहां पे स्कूल कॉलेज एंड --

यहाँ पे एक गार्डन है गार्डन के नीचे बहुत सारे फूल है फूल जो है उसके पीछे--

उसके नीचे स्कूटी बाइक सामने एक और घर है जिसका--

एनवायर बहुत सारे लोग खड़े हैं एक आदमी है फोन चला रहा है यहां पे बच्ची को कंधे पर लेकर के एक औरत--

पर्स लिए वाइट कलर की फ्रॉक पहन के खड़ी है उसके बगल में एक उसका लड़का है।

यहां बच्चों के खेलने वाले और सोने वाले एक ट्रॉय का छोटा सा कार है उसके बगल में बहुत सारे ट्रॉय सब हैँ।

उसके बगल में और सारे बहुत सारे खिलौने हैं पीछे बहुत सारे कुछ डिब्बों में रखे हुए हैं जैसे--

तार दिख लंबा तार से खींचा हुआ छड़ जैसा है और साइड में भी है।

आ रहा है उसके साइड मे एक और है वहाँ पे पियूस और छोटे बच्चे पे पीछे एक ऑरेंज कलर का पर्दा है दो व्यक्ति उसके ऊपर--

हरे हैं जो ये कलर ब्लैक और ब्लैक इन ब्लैक ब्लैक पूरा शॉर्ट पहना हुआ है इनने एक वाइट कलर का शॉर्ट एन्ड --

दोनों वाइट कलर की है एन्ड यहां पे एक बिल्डिंग सा है जो बांधी थी बंधे है एक कुतिया भी जा रहा है।

ये बहुत बड़ा कॉलोनी है जो बहुत ही अमेजिंग देखने मिलेगा लग रहा है।

और् शायद मे ऊपर जीक्स भी लगा हुआ है दो जीक्स लगा हुआ है उसके ऊपर --

इसके साइड में चलदे का बना हुआ ऊपर लगा हुआ है इधर एक और जीस हैँ।

यहां पे बहुत बाइक्स है यहां पे एक स्प्लेंडर का बाइक है हीरो होंडा वहां पे दो-तीन स्कूटी है उधर ब्लो है इधर होंडा का भी बाइक है इधर और एक स्कूटी हैँ सामने हीरो होंडा और--

सीढ़ियां है सीधी पे दीप जला हुआ है और नीचे थाली में--

सामने के स्कूटी में दो व्यक्ति खड़े हैं सामने एक और स्कूटी है पिलर के सामने जहां पर एक हैवी ड्राइवर लड़की चला रही है यहां पे एक बाइक है।